टीन दिख रही है लोहे का पाइप है एक व फोटो लगी है घड़ी है कुर्सियां हैं।

फ्रिज है और कुछ सामान टेबल में रखा है।

एक ग्रीन कलर की जीव दिख रही है जंगल है।

काफी बड़े बड़े दो पेड़ हैं और पीछे पेड़ हैं।

अं खंडर सा है और दो जेंट्स दीवार पे बैठे हैं एक फोन पर बात कर रहा है फूलों की माला --

और दो मोटरसाइकिल खड़ी हैं दो मोटरसाइकिल में शीशे हैं।

और पीछे लोहे के पाइप हैं और सिल्वर कलर के सिल्वर कलर के हैं।

आं काफी सारे सामान रखे हैं खानों में एक मटका है।

संख है और मोतियाँ लग रही हैं तीन --